और इसमें सोफे भी पड़े हुए हैं ब्लू कलर के।

शटर भी लगे हुए हैं बाइक भी खड़ी हुई है।

और ये लकड़ी का बहुत सारा इसपे चित्र उतरा हुआ है।

इसमें लाइटें भी लगी हुई है।

यहां बाईकें भी खड़ी है।

इसमें बहोत बड़ी बड़ी टेबिल पड़ी हुई है।

बहुत सारी कुर्सियां भी रखी है काले कलर की।

और दीवारों पे रंग हुआ है।

मेज़े भी पड़ी हुई है।

और यहां गाडियां भी बहुत सारी चल रही है ये आदमी भी इधर उधर फिर रहे हैं।

बहुत सारे यहां लैपटॉप भी रखे हुए हैं छत में लाइटे भी लगी हुई हैं।

जहां पे यह बहोत बड़ी दुकान है।

और इसमें बहोत सारे खाली डब्बे भी रखे हुए हैं काउंटर में शीशे वाले--

यहां पे ये ऑपरेशन थिएटर है।

नीचे हरे रंग की चद्दर पड़ी हुई है।

ऊपर छत में पंखे भी लगे हुए हैं।

और ढक्कन खोल रखा है टोपी भी पहन रहा है।

बहुत सारे मोबाइल भी रखे हुए है।

खिड़कियों में शीशे भी लगे हुए हैं सड़क भी है।

यहां पे बरांदा बहुत बड़ा है इसमें कुछ--

यह एक बड़ा कमरा है।